एक बोर्ड लगा हुआ है जो की लाल रंग है पेड़ दिखाई दे रहा है पेड़ो पर हरे हरे पत्ते दिखाई दे रहें है टहनियां दिखाई दे रही है पीछे एक शेड लगा हुआ है स्टील का शेड पड़ा हुआ है एक डेस्क रखी है जिस पर कुछ सामान रखा हुआ।